सामने एक मार्केट नज़र आ रही है मार्केट में साइड में एक मेज नज़र आ रही है।

सामने एक मैदान नजर आ रहा है मैदान में कहीं-कहीं घास नजर आ रही है बहुत सारे लोग लाइन लगा के बैठे हुए हैं।

आसमान दिख रहा है आसमान का रंग नीला है।

काले रंग का सामान रखा हुआ है बहुत सारे पोल नज़र आ रहे है बहुत सारे लोग नज़र आ रहे है ऊपर आसमान नज़र आ रहा है।

कुछ पत्ते सूखे भी पड़े हुए है ऊपर आसमान नज़र आ रहा है बादल दिखाई दे रहे है।

लाइटें लगी हुई है सामने कुछ डेकोरेशन भी नजर आ रही है साइडों में भी --

सामने एक दीवार है दीवार पर वाइट कलर का पेंट हो रहा है दीवार की साइड में बोहत सारे गमले रखे हुए है।

पौधे लगे हुए हैं सामने एक बिल्डिंग नजर आ रही है बिल्डिंग पर येलो व रेड कलर का पेंट हो रहा है।

दास एंड बी. एम. स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस लिखा हुआ है।

मोर के साइड में कुछ सामान नजर आ रहा है पंखा लगा हुआ है।

बहुत सारी घास भी नजर आ रही है कुछ सूखे पत्ते भी नजर आ रहे हैं।

सामने एक दुकान नजर आ रही है दुकान की साइड वाली दीवार में अलमारी बनी हुई है।

कोल्ड ड्रिंक की बोतल और पानी की बोतल है सामने बहुत सारे पैकेट्स लटके हुए हैं।

तीन लोग खड़े हुए है एक बाइक नज़र आ रही है सामने रेसिपीज़ का बैनर लगा हुआ है साइड में एक--

ग्रीन कलर का डस्टबिन रखा हुआ है साइड में एक स्कूटी खड़ी हुई है एक बाइक खड़ी हुई है।

साइड में कुछ वाइट कलर की छोटी-छोटी दीवारें नज़र आ रही है।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

वाइट और ग्रीन है बोर्ड के ऊपर कार्यालय --

पोल के नीचे एक पोल पर कुछ बैनर लटके हुए हैं।

बहुत सारे फल नज़र आ रहे है साइड में एक रेड कलर का बैनर भी लगा हुआ है।

सामने एक दीवार नजर आ रही है दीवार पर येलो कलर का पेंट हो रहा है।

साइड में एक आलमारी नज़र आ रही है जो पिंक और ग्रीन कलर की बनी हुई है साइड में कुछ--

आयरन की अल्मारी नज़र आ रही है जिसमें फूलगोभी रखी हुई है केले रखे हुए है कच्चे --

सामने एक बिल्डिंग नज़र आ रही है बिल्डिंग पर वाइट कलर का पेंट हो रहा है बहुत सारी येलो कलर की बसें नज़र आ रही है।

--ज ने वाइट कलर के कपडे पहने हुए है जो व्यायाम कर रही है कुछ पौधे नज़र आ रहे है कुछ पेड़ नज़र आ--

साइड में कुछ पौधे नजर आ रहे हैं बहुत बड़े-बड़े पत्थर भी नजर आ रहे हैं छोटे-छोटे मकान भी दिखाई दे रहे हैं।

कोर्ट पैंट पहने हुए है साइड में एक औरत खड़ी है औरत ने साड़ी पहनी हुई है साइड में एक मूर्ति भी नज़र आ रही है।

बहुत सारे पत्ते नीचे रखे हुए हैं ऊपर कुछ नीची के गुच्छे।

बहोत सारी लाइटे लगी हुई है ऊपर पंखे भी लगे हुए है बहोत सारे लोग कुर्सी पे बैठ कर खाना खा रहे है कुछ लोग खड़े होकर खाना खा रहे है।

सामने एक नदी नजर आ रही है नदी में बहुत सारा पानी भरा हुआ है।

सामने एक गेट बना हुआ है गेट के ऊपर बैनर लगे हुए है एक ब्लैक कलर का बैनर है दो वाइट कलर के बैनर है।

पेड़ भी नज़र आ रहे है कुछ मकान के अंदर पेड़ नज़र आ रहे है।

बूटी नजर आ रही है रेड व वाइट कलर के बहुत सारे बालूंस लगे हुए हैं ऊपर --

ओकीनावा प्रतीक ई मोटर्स लिखा हुआ है साइड में चेयर है एक आदमी बैठा है।